हमरे सामने इस चित्र में--

और ओरियो ये सब बोहोत सारे रस्क भी रखा हुआ है। हल्दी--

हम देख रहै है की यहां पर लोहै की फैक्ट्री है जहां पे लोहै से कुछ पाइप है जैसे समान बनाए जा रहै है।

की फोटो लग रही है। जिसमें लोग मास्क लगाए शायद पूछताछ काउंटर या दवा के काउंटर पर खड़े हैं।